यहाँ पर एक दुकान को दिखाया गया है दुकान तुरंत अभी ही बनाया गया है और उसमें एक पेट रखे बेलून उ फूल लगाए गए हैं और यह दुकान एक सैलून का है और यहाँ बाल काटने का काम किया जाता है सैलून काफी अच्छी है |

यहाँ पर एक पेट्रोल ट्रक को दिखाया जा रहा है और ये ट्रैक काफी लम्बी है और काफी अच्छी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक छोटा दुकान को दिखाया जा है दुकान का नाम मुफ्त हवा। यहाँ पे हवा को फ्री मे लेने का काम किया जाता है ये काफी अच्छी प्रक्रिया है।

प्लेस के बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इंडियन आयल डीजल पेट्रोल बीज खाद।

तीन चक्के के हैं और यह टोटो में काफी लोग बैठे हुए हैं और यह गाँव के ओर जा रहा हैं |

नमाज़ पढ़ने का काम कर रहे हैंऔर यह काफी अच्छी तरह से सजाई गयी है और इसे बनाने में काफी --

इस तरह के छोटे-छोटे जीव-जन्तु रहते होंगे यह नदी के ऊपर एक ओवर ब्रिज भी बना हुआ है जिसे बनाने में काफी पैसे --